सड़क पे कुछ लोग चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

एक महिला हाथ में कुछ लिए हुए--

जहां पे लाइटे जल रही है।